यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है गा यहा पर बहुत सारे पहाड़ ही पहाड़ है गे और यहाँ --

यहाँ पर एक स्टोर हेगा ये काफी अच्छा स्टोर बना हुआ हेगा इसमे व्हाइट कलर के कांच के शीशे लगे हुए हेंगे।